नेमप्लेट लगी हुई है और उस पर एक नाम लिख हुआ है।

श्री कुंवर सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पांडे।

निर्माण का कार्य चल रहा है और एक मिस्त्री लेन्टर डालते हुए नजर आ रहा है।

और बिल्डिंग की डोलियों पर भी पेड़ पौधे उगे हुए नजर आ रहे --

यह तस्वीर एक गाडी की है और यह गाडी एक स्विफ्ट गाडी है।

पर कुछ व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नदी के किनारे पर अनेक पेड़-पौधे उगे हुए हैं और नदी में बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक टेंट का है और टैंट की।

यह दृश्य एक जिम के अंदर का है जहाँ पर एक लड़का शीशे के सामने खड़ा होकर अपने --

यह दृश्य एक दुकान का है और यह दुकान ड्राईक्लीन की दुकान है।

यह तस्वीर एक दुकान की है और यह दुकान एक लॉन्ड्री की दुकान है। जहाँ पर --

यह एक दृश्य है किसी पुरानी --

और यह रस्ता नीचे की तरफ उतरता दिखाई दे रहा है।

के डब्बे रखे हुए हैं।

यह दृश्य किसी होटल के अंदर का है।

छत में अनेक लाइटें भी लगा रखी हैं जिससे होटल रंग बिरंगा व चमकदार दिखाई दे।

दो सॉस रखे हुई है एक लाल एवं एक हरी --

यह दृश्य एक दुकान के अंदर का है जहाँ पर अनेक पकार की मूर्तिया रखी गई हैं जिनमे --